सामने से बड़ा सा बरौंदा है जो बहुत सारे लोग बैठे हैं एक बच्ची फेवीक्विक हाथ में रखे हुए हैं और नीचे की साइड पर कैंची और एक चूड़ा रखा हुआ है।

सामने साइड में कुछ बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं एक गमला रखा है जो हरे रंग का उसमें पत्ती है एक बगल में लेडी खड़ी हुई जो पिंक कलर सफेद रंग की साड़ी है पर्दे का रंग भू--

यह मिट्ठू बैठे हैं जो नीले पीले रंग के मिट्ठू है जाली लगा हुआ है बगल में एक आदमी खड़ा जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है केले के पेड़ लगे हुए हरे रंग के पत्तियां हैं।

सफेद रंग की और बगल में परदे लगे गए जो कथे रंग के दिवार का कलर सफेद है एक टेबल लगा हुआ काले रंग के एक टेबल रखी हुई है बगल में एक डस्ट्बिन है दरवाजा बना हुआ है से ऊपर छत पर लाइट--

छोटा सा घर है जो टीने लगे हैं चारों तरफ नीले रंग के एक खम्बे खड़े है जिस पर ट्रैन्स्फॉर्मर लगाई गई है दीवाल--

टेबुल के उसके ऊपर कथे रंग के टेबुल है उसके ऊपर एक सफेद रंग की परांठे रखेली है और एक जो पराँठा रखे गए है लाल रंग के पीले रंग के पराठे जो काफी पराठे रखे हुए हैं।

गुड दे रखी गई है। बगल मे एक ऑटो मे बहुत सारी बिस्किट रखी गई है।